बॉर्ड पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिखा हैं।

ये सोया चाप एंड बर्गर के स्टाल है।

बीच के साइड में आदमी चेयर पर बैठा है।

आटा पीसने वाली चक्की है।

यहां लोगों की काफी भीड़ है।

लोगों ने पगड़िया पहनी हुई हैं।

बत्तख ब्ला ब्लैक कलर की है।

यह येलो कलर की बड़ी जीप प--

टी शर्ट पहनी हुई है इसके आसपास नीचे--

टेबल पर डॉक्टर रमन गोयल के नंबर प्लेट भी लगी है।